यहां हमे ऑरेंज कलर के बहुत सारे पत्थरों से बन हुए किसी चीज को देख पा रहे है ऐसा लग रहा है की यहां पर बहुत सारे पत्थर जमा के रखे हो लेकिन वो जमे हुए नहीं वो पहले से ही वहा पे दबे हुए पड़े है।

हम देख सकते है की निचे की तरफ कुछ गिलास को कुछ कप को उल्टा कर के भी रखा रया है निचे रैक पर ओवर पूरा वाइट कलर का ओ पूरा रॉक हमें देकनेको मिल रखा ओवर हेंगर मे कूच काफी सारी क्वांटिटी में गिलास के तंगके रखा |